ये गैराज का ही सीन है। गैराज में गाड़ी खुली पड़ी है।

माईकर कोड के साथ में स्कैनिंग के लिए पेटीएम का नंबर ले रखा है वो है और एक की मुंडी दिखाई दे --

ल लेंटर वगेरा डल चुका है लाइट ली भी जा चुकी है।

और कुछ स्तैर्स होते है एयरोप्लेन के बहार लगाते है वो --

ब्रिज है ब्रिज अंडर कंसट्रकशन है जो कि बन रहा है नीचे दो ट्रक खड़े हुए हैं दो तीन गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। एक तरफ से ये आधा बन चुका है दूसरी तरफ से ये--

और बहु सारी छोटी-छोटी स्टॉल्स लगाई गईं हैं।

खुला रहता है अंदर में एक पेड़ लगा हुआ है एक लेफ्ट में और एक राईट में।

ओए ये खंभों के साथ साथ कुछ और भी काम हो रखा है यहाँ पे ।